इसमें कार भी खड़ी है।

आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां और दरवाजे भी लगे हैं।

पीछे टावर भी दिख रहा है।

और गेट भी दिखाई दे रहे हैं।